येलो कलर का फोस्टर है।

और गमला में फूल लगाया हुआ है पौधा--

और हारा भरा पौधा भी है।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

और चेयर भी लगा हुआ है सोफा भी लगा हुआ है।

इस फोटो में एक स्विमिंग पूल दिखाया गया है।

उसमें खजूर का पेड़ भी है।

पेड़ बहुत हरा भरा दिख रहा है।

और गेट भी लगा हुआ है हरा पेड़ भी लगा हुआ है पुल वाइट कलर सा से पेंट हुआ है।

और बगल में घर बहुत सारा है।

पीला कलर का पोल भी खड़ा है।

इस फोटो में एक दुकान दिखाया गया है।

इस फोटो में बहुत सारा मछली दिख रहा है।

और एक आदमी काट रहा है और एक आदमी लेकर जा रहा है वहाँ पर --

इस फोटो में एक भगवान का मंदिर दिख रहा है वहाँ पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

और मंडी के अंदर सेव अनार--

घर ग्रीन कलर का है।

इस फोटो में क्लासरूम दिखाया गया है।

क्लासरूम का कलर ब्लू है।

और वहाँ पर बहुत सारा मजदूर काम कर रहा है।

पारार्ठी का चचार बंधा हुआ है।

वहाँ पर इस्टा भी रखा हुआ है।

नौ चियर लगाया हुआ है और--

उस पंखा भी लगा हुआ है।

इस फोटो में बहुत सारा औरत दिख रही है।

इस फोटो में एक रेस्टोरेंट दिखाया गया है।

और वहाँ पर चेयर लगा हुआ है।

और गुबारा से सजाया भी गया है।

वहाँ पर बहुत सारा लाइट रंग बिरंग के लगाया हुआ है।

और टूल भी लगा हुआ है।

रूम के अंदर झूमर भी टंगा हुआ है।

रूम के अंदर दो लाइट है।

बच्चा को झूलने के लिए झूल्ला भी लगा हुआ है।

येल्लो कलर का है और ब्राउन कलर का उसका गेट है।

और बहुत सारा लंबा पोस्टर छपा हुआ है ग्रीन पौधा भी लगा हुआ है।

एक म्यूजिक पर नस कर रहा है।

हाथ में घड़ी पहना हुआ है।

हरा कलर का पौधा भी है।

बगल में पिंक कलर का घर भी है।

और ए_सी भी लगा हुआ है।

और गमला में पौधा भी लगा हुआ है।

एक चेयर भी लगा हुआ है।

चेयर भी रखा हुआ है।

आदमी येल्लो कलर का शर्ट पहना हुआ है।

इस फोटो में एक ए_टी_एम दिखाया गया है।

और एक आदमी भी खड़ा है।

इस फोटो में एक नदी दिख रहा है।

चर में एक भगवान का फोटो दिखाया गया है।

और पौधा भी लगा हुआ है।

क्रीम कलर का है और रेड कलर का--

ये पिक्चर में राधे कृष्ण का मूर्ति दिखाया गया है।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

ये फोटो में एक गांधर दिख रहा है।

और ग्राउंड घेरा हुआ है।

और ग्रीन कलर का पौधा भी लगा हुआ है।

दो चार लड़का खड़ा हुआ है।

इस फोटो में एक रेसिडेंट दिखाया जा रहा है।

रेसिडेंट के अंदर चांद भी है।

गमला में फूल भी है।

इस पिक्चर में दो कार दिख रहा है जैसे में एक कार खोला गया है वहाँ पर बहुत सारा --

पं एक पंखा भी लगाया गया है।

हरा हरा पत्ता भी निकला है और--

इस पिक्चर में एक रूम दिखाया जा रहा है।

और बहुत सारा गुवारे लगाया गया हैं।

और लोहे का स्ट्रिक भी लगा हुआ है बहुत सारा--

इस पिक्चर में एक फील्ड दिखाई दे रहा है।

कुछ लड़की सामान लेकर आ रही है।